एक घर की बालकनी से ये फोटो ली गई है जिसमें सामने वाले घर दिख रहा है एक हल्का सा गांव का दृश्य दिख रहा है.

भगवान श्री गणेश की मूर्ति लगाई गई है डोरेमोन कार्टून दिखाया गया है घड़ी दिखाई गई है.

खेत पर काई उग गई है दिवारे बहोत ही गंदी लग रही हैं।

पर सूरज की रोशनी हिरण के ऊपर पड़ रही है तो उसका प्रतिबिंब बहुत ही सुंदर लग रहा है.

नीचे कीचड़ है मिट्टी में चलने के--

दीवार पर पोस्टर्स बनाकर चिपकाए गए--

आजकल तरह तरह की मशीने मार्केट में हमें देखने के लिए मिलती हैं।

ये इसे व्यापार के लिए यूज किया जाता है।

यहा पर मशीनें रखी हुई हैं।

बौद्ध धर्म एक शांति प्रिय धर्म है.

लग रहा है ये एक पुस्तकालय है लाइब्रेरी है.

कांच खिड़कियों में इस्तेमाल किया गया है।

उन्हें हमारे काम के बारे में पता चले।

सीढ़ियां है जहां पर लोग चलते हैं.

ताकि गाड़ी से होने वाले एक्सीडेंट से बचा जा--

इसके बारे में बता पाना वैसे तो बहुत कठिन था.

भारत का झंडा यहां लहरा रहा है.

ये हिमाचल की राजधानी शिमला में लहरा रहा है।

पीछे देवदार के पेड़ दिख रहे हैं।

परिवार वाले यहां अपने परिजनों से मिलने के लिए जाते हैं।

ये गाड़ी है जो सिर्फ अफसरों को ही प्रदान की जाती है बाकी किसी को नहीं--

पीछे प्रकृति का सुंदर दृश्य देखा जा सकता है.

आगे गाड़ियां खड़ी हैं मानो किसी राजा महाराजा के समय की इमारत हो--

चारों युग इस प्रकृति के ढांचे को संभाले हुए खड़े हों।

ये किसी गरीब का ठेला है।

बादलों का दृश्य बहोत सुंदर लग रहा है।

दीवारों और छत पर भूरा रंग किया हुआ है.

उन दुकानों को तरपाल से ढका गया है.

ताकि अगर एकदम बारिश लग जाए तो सब्जियां खराब ना हो।

बहुत सारे लोग औरतें बच्चे मर्द नीचे खड़े हुए हैं दर्शन कर रहे हैं.

एक लंबी बिल्डिंग है जो किसी मुसलमान समुदाय की है.

सामने मुसलमान खड़े हुए हैं कोई छाता लेकर--

आसमान का रंग बहोत साफ है नीला है।

पीछे ग्रिले हैं जो लोहे की बनी हुईं हैं।

बाहर कुछ लोग खड़े हुए हैं.

और यूरेन शीट्स भी रखी हैं.

राम लखन को नीले कपड़े पहनाए हैं.

सबसे आगे एक आदमी चेक शर्ट पहन के चल रहा है.

पीछे की तरफ पहाड़ियां दिख रही हैं हरी नीली बूरी पहाड़ियां हैं.

सर्दियों के स्वेटर टंगे हुए हैं.

सामने प्रिंटर भी लगा हुआ है।

जो सिद्धिविनायक मंदिर को दर्शाता है।

बाहर नवग्रह का मंदिर दिखाया गया है।

और उस पर बहुत से तकिए रखे गए हैं.

जहां पर लड़कियां बैठकर पढ़ रही हैं.

सभी लड़कियों ने किताबें खोली हुई हैं.

एक लड़की अपनी जगह से गायब है.

यहां गुलाबी और सफेद फूलों से--

यहां सफेद रंग के पॉट्स लगाए गए हैं.